धीमी के साइड मे एक बस चलती दिखाई दे रही है।

दाहिने हाथ की और कुछ पतली लड़की लड़कियां गिरी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान का नाम राधे कृष्णा फुटवेयर्स दिखाई दे रहा है।

दाहिने और की और कुछ नए सरिए दिखाई दे रहे हैं।

बड़ी वाली गाड़ी में बैठा हुआ है लोग--

छै मोबाइल तथा दुसरे में भी छै मोबाइल --

राइट साइड एक इंसान का हाथ दिख रहा है।

यहां पर एक इंसान पोल के पास खड़ा होकर फोटो क्लिक करवा रहा है।

बाईं तरफ एक एटलस की साइकिल भी खड़ी हुई है।

यह प्रोग्राम चौदह फरवरी को किया जा रहा है।

इस यह जज्झर में स्थित है इसके सामने जज्जर से धोड़ जाने वाला मेन रोड है।

सामने दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई है।

पिक्चर में मिस्त्री ईंट लगा रहा है।